यहाँ पर भी ये बादल भी दिख रहा है कुछ वोनेरी भी दिख रही है यहाँ पर गेट भी लगा हुआ है वो भी काला दिख रहा है यहाँ पे शिरी गणेश है डेरी फार्म दिख रहा है की यहाँ पर एक खड़ा हुआ है उसकी परछाई दिख रही है।